और एक व्यक्ति साइकिल पर बैठा हुआ है जिसने मास्क लगाया हुआ है।

यह एक ग्राउंड है इसके अंदर दो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं एक बच्चे के हाथ में बैट है।

और एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है।

और आगे की ओर कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसके अंदर लकड़ी की फिटिंग हो रही है जिसके अंदर बॉक्स में समान रखा है और कोका कोला का फ्रिज भी लगा हुआ है।

उसके ऊपर एक शीशा क्लीनर रखा हुआ है।

यह बहुत सारी लाइटों से बना हुआ है इसमें एक काउंटर भी रखा हुआ है जो कि शीशों से बना हुआ है।

यह एक दुकान है जिसके अंदर अलग अलग कलर के कपड़े रखे हुए हैं और जो की स्टील के स्टैंड पे रखे हैं।

और सभी बच्चों के लिए एक खाना बना रखा है और इसके अंदर एक खाने में बुक भी रखी है।